सामने बैठने के लिए काफी सारी चेयर्स भी नजर आ रही हैं और सामने जैसा रंग बिरंगी कुर्सियां लगाई गई हैं।

और दूर से काफी सारा समान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जैसे की--

और इसमें अलग अलग तीन चार वृष नजर आ रहे हैं और उसके पास में देखा जा सके तो दो तीन बिल्डिंग है।

क्योंकि काम करते दिखाई दे रहे हैं तसले उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड में पोल पड़ी हुई हैं व्हाइट कलर की छोटी छोटी और एक साइड में बड़ी पड़ी हुई हैं एक साइड बैग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने कॉफी दिखाई जा रही और बहोत सारी बोट यहां खड़ी हुई दे रही व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई दे रहा है।

और जैसे आप देख सकते है सामने गाड़ी खड़ी हमें दिखाई दे रही हैं और आस पास में काफी सारे वृक्ष नज़र आ रहे हैं काफी सारे फैक्टरी नज़र आ रही हैं।